इस दुकान में विभिन्न-विभिन्न प्रकार के आइटम दिख रहे हैं दुकान में कितनी खूबसूरती से समान को रख के सजाया गया है।